यहा पे हम देखेंगे तो यहा पे बताया जा रहा है की अलग-अलग स्टेप्स मे उनको रखा गया है।

और यहाँ पे पत्थरों को भी देख सकते है ऊपर की तरफ उजाला आ रहा है और बीच मे हम झाड़ो को भी देख सकते है।

इस चित्र मे हम ऊपर की तरफ आसमान को देख सकते है और हम पीछे से हम झाड़ों को देख सकते है।

और यहाँ पे बुक्स को रखने के लिए टेबल का कलर यानी की अलमार का कलर ग्रे है।

दीखाया जा रहा है और यहाँ पे पौधे उग रहे है।

उसमे कई पेजेस भी दिख रहे है और हम यहाँ पे बाजू की तरफ हम देखे तो यहाँ पे आ स्विच बोर्ड है और पानी का बोटल भी दिखाई दे रहा है।

को भी देख सकते है और हम आय.सी.आय.सी.आय. बैंक को देख सकते है रितेश करके लिखा गया है स्पॉट ऑन --

कार को दे--देख सकते है और होटेल मी कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहा है बाहर की तरफ़ हम झूले देख सकते है।

इस चित्र मे हम दा होटल को देख सकते है। या तो द होटल सिटी पार्क करके लिखाया गया है।

अ-तीन एक पुतले को बना हुआ रखा देख सकते है और हम सामने गेट को भी देख सकते है।

इस चित्र मे हम ऊपर की तरफ़ आसमान को देख सकते है और हम यहाँ पे पानी को देख सकते है जो पानी अलग-अलग तरह मे है और यहाँ पे हम पत्थरों को देख सकते है मिट्ठी--

नदी को देख सकते है और हम यहा पे झाड़ों को भी देख सकते है जिसका कलर हरा होता है।

इस चित्र मे यहाँ पे एक बिल्डिंग को देख सकते है यहाँ पे हेअरब्यूटी मेकअपनैल आर्ट का दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पे एल_जी शोरूम का भी बताया जा रहा है। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक का भी और यह बाजार जैसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे कपड़े हर चीज भी दिखाई जा रहा है।

यह उनको आइ ड्रॉप्स डाल रहे है और अब पीछे की तरफ अॅक्टीवा भी खडी है।

और हम यहाँ पे भाई दुकान को देख सकते है और ऊपर की तरफ बिजली को देख सकते है आईफोन का यहा पे कंपनी का भी बता--

जमीन दिखाई दे रहा है और हम यहा पर पेड़ो को देख सखते है और यहा पे हम देखेंगे तो हमको आसमान भी देख सखते है।